पानी दिख रहा है और यहां पर कुछ--

गेस्ट लॉन्ड्री हॉस्पिटल लॉन्ड्री हॉस्टल लॉन्ड्री रिटेल लॉन्ड्री .

लौंडरी ये सब कुछ यहां पर मिलता है ड्राई क्लीनिंग अल्सो .

यहां पर एक प्रोग्राम है और यहां पर सेंटर क्लॉक दिख रहा है और कुछ लोग हैं और स्टार का--

ये एक कपड़े का दुकान है और यहां पर बहोत सारे कपड़े है बहोत सारे कुर्तियां हैं और एक आदमी वहां पर बैठा हुआ है मोबाइल देखते--

एक लड़के ने एक कार का सर्विसिंग कर रहा है।

बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े हुए हैं कुछ बैनर लेकर--

है और कुछ लोग बैंक के अंदर है।

और यहां पर कुछ गाड़ी सफेद रंग की का--

और यहां पर बहुत सारे पेड़ भी है।

छोटे बड़े बहुत सारे यहां पर कप अवेलेबल है।

की मशीन है वहां पर एक आदमी ने टायर को रखकर उसका मरम्मत कर रहे हैं वो मशीन का रंग लाल हे।

यहां पर एक बड़ा सा घर है और एक बुढ़िया है बुढ़िया ने जाड़ो मार रही है और यहां पर बैठने के लिए बाकड़ा है।

और घर के सामने गारडन है और बहुत सारे पेड़ हैं।

यहां पर बहोत कुछ मिलते हैं एक दुकान है।

यहां पर अ स्टेशनरी बुक सेंटर है।

मिलते हैं और यहां पर एक लड़का रुका हुआ है और काली रंग की यहां पर स्टूल रखी गई हुई है।

वेट्स है पैन है है।

और वहां पर बहुत सारे टू व्हीलर गाड़ी है।

यहां पर एक सेंटर है वहां पर फूड मिलता है।

आई लव फूड आई लव ईटिंग यहां पर कुछ टेबल है।

कोलगेट यहां पर सब कुछ मिल जाता है।

ये एक रूम है और इसमें--

और यहां पर दीवार पे चिपकाई हुई कुछ आर्ट्स हैं।

यहां पर बहो कुछ बच्चे खेल रहे है।